पर एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है एक लैपटॉप भी है और यह फूल ऑफ फर्नीचर भी दिखाई दे रहा है यहां पे वाइट कलर की--

खिंचा और डाला जा रहा हैं और यहां पे साइड में बहोत सारे खेत भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पे बहोत सारे पेड़ भी है।